दो आदमी दो औरते बैठी हुई हैं। कंप्यूटर है। दीवाल पे --

उसके साइड में हरा-भरा घास हैं। बादल दिख रहा है ब्राउन कलर का दो बच्चे आगे हैं एक बच्चे पीछे --

दूर एक बच्चा एक आदमी जा रहा है। बच्चा पहना सफेद कलर का शर्ट और ब्लैक कलर का पेंट --

दो-तीन लोग बैठे हुए हैं।